और इहाँ पर मोटरसाइकिल की दुकान है सर्विस हो रही है मोटरसाइकिलों की --

और यह रास्ता एक आदमी जा रहो है। पेड़ हैं पास में --

नीचे मैट बिछी है बढियां वाली।

एक बहुत बड़ी दुकान है सोफा बिक रहे हैं यहाँ पर। और